स्टाईलीज में खड़ी है और इनके पीछे आप लोगों को देवों के देव महादेव मिलेंगे जिनके बारे में पूरे देव के तीनों लोक में चर्चा है वो इन लोग का शो में --

गाइस यही मैं आप लोक को आज लेकर चला आया हूँ पर्दे की दुकान पे | यह देखिए पर्दा एक से एक वीआईपी पर्दा हैं एक से एक तरीका से पर्दा रखा गया है। आप लोग इस --

आप इसके अंदर लेटर डालेंगे तो जिसके ध्व द्वारा लेटर लिखा गया है। जिसके पास ये जाना चाहिए उसके पास ये औटोमेटिक पहुंचेगा।

हैलो गाईज आप लोग जैसे के देख रहे हैं। एक बुक स्टोर है। यहाँ पे एक से एक --

और ये बहुत ही महेनत का चीज़ है। बहुत ही मेहनत से इसको बनाया जाता है। ये देखिए कितना ही दिमाग से उठाया उसे जाता और उतना ही मेहनत से उसे लाया जाता है। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ की टूट जाएगा।

हेलो गाइस आप लोग देख रहे होंगे एक रेस्टोरंट का फोटो है यह रेस्टोरंट में बहुत ही तरीके के देखिए --

हेलो गाइस यह आप लोग देख रहे होंगे यह एक नदी का सीन है। इसके ऊपर एक बाबा दिख रहे है जो बैठे हुए फोटो खिंचवा रहे है। पीछे नांव है बोहोत ही अच्छा है और इसके पीछे देखिए कितनी अच्छी झाड़ी है।